अउ ओती हरा-भरा दिखत ते उहा एती जाते तो खूब मजा आतिस अउ ए मेला म ए आ ए चोकोबर खाते त खूब मजा आतिस --

ए गेट ह मस्त दिखत हे भाटा घर म हे औ मस्त दिखत हे औ झण्डा टँगाए हे तहु मस्त दिखत हे।